कोचिंस है जिसमें पढ़ाई होती है एक बच्चे के साथ बैठे हुए है कोचिंग सेन्टर में नीचे भी फूल लगा हुआ है ।

ये सब बन्दे दिख रहे इसमें सफाई की जरुरत है अगर कोई व्यक्ति इसमें रहता है तो उसे सफ़ाई भी होती है लेकिन कोई सफ़ाई नहीं --

ये बेड है इसपर दो कम्बल रखे हुए हैं दो तकिया रखे हुए हैं ये बेड रूम है।

मस्जिद लग रहा है मुझे जो की मुसलमानो का जो होता है उसी पर होता है लेकिन सॉरी यहाँ ये मस्जिद नही है ।